इसके दुकान के आगे एक तिरंगा लगा हुआ इसमें पेटियम की सुविधा उब्लब्ध है।

जिसे आस-पास विद्युत प्रवाहित होती है।

रोड के आसपास बहुत सारे पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कोरोना है भगाओ।

यह क्लीनिक में सारी सुविधाएं उपलब्ध लग रही है।

इस प्रोग्राम में बहुत लोग आए हुए हैं प्रोग्राम दोनों तरफ कुर्सी लगा हुआ है बहुत सारे बैठे हुए है बीच में आने-जाने का रास्ता छोड़ा हुआ है।

यह एक फील्ड है इस फील्ड के चारों तरफ बहुत --